उसके नीचे गत्ते के छोटे -छोटे घर दिखाई दे रहे है यहाँ अच्छा दिख रहा हैं ।

यह एक गार्डन है।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

ये घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है।

यहाँ बस में एक ही बल्ब दिख रहा है।

यहाँ लोग अभी उपस्थित है।

यहाँ का नज़ारा अच्छा है।

होटल का नाम शिवम होटल हैं ।

यहाँ लोग नास्ता करने के लिए आते हैं।

तलाव में कई जम गया है ऐसी लग रहा है।

यह बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन से बाल कटवाया है यह अच्छा दिख रहा है।

उधर ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ लोग घूमने के लिए भी आते हैं।

लगाया गया है यहाँ का सुंदरता बहुत ही अच्छा है।

यहाँ का सुंदरता बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

बगल में बहुत ही सारे पक्की के एक मकान है चारों तरफ--